ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा बल्ब लगाया गया है जोकि जल नहीं रहे हैं।

और एक मुस्लिम है जो किसी से बात कर रहा अपने साथियों से बात कर रहे हैं। व्हाइट कलर का उनका बिल्डिंग है।

और सामने में बहुत सारे कुर्सी लगाए गए हैं।

उसका एक गेट भी लोहे कत है।

और नीचे में वाइट कलर का टाइल्स लगाया गया है।

और बहुत सारे आदमी बैठे हुवे है और बिल्डिंग में ए_सी लगाया गया है।

एक चेयर भी है बिल्डिंग के अंदर में ऊपर में करकट है।

सामने एक बिल्डिंग और वाइट कलर का बहुत बड़ा--

सामने एक अमरूद का वृक्ष है और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

और साइड में कुतुब मीनार के सामने दो आदमी जो हैं फोटो खिंचवा रहे हैं।

मर्करी वाइट कलर का है नीचे ग्रीन कलर का तिरपाल बिछाया गया है।

ऊपर में व्हाइट कलर का बल्ब है और साइड साइड में कुछ रखा गया है वगैरह बहुत सारे शीशे में।

बाहर में एक व्यक्ति के बगल में बाल्टी है और अंदर में शीशे का गेट लगाया गया है।

बहोत सारे शीशे दिख रहे हैं।

व्हाइट कलर का ऊपर में पेंट किया गया--

और मिट्टी कलर का फ्रेम इसका बनाया गया है।

और कार्टून में नारियल लेकर रखा गया है सामने एक झाड़ू है।

बैक्ट में बहुत बड़ा बड़ा पेच है।

ये नया शोरूम खुला है और यहां पर स्कूटी मिलते है।

बहुत सारे दवा जो है शीशे का है और कुछ रखे गए हैं डिब्बे में कांच का डिब्बा बनाकर कूट का डिब्बा बनाकर।

और ऊपर में व्हाइट कलर का बल्ब भी लगाया गया है। व्हाइट कलर का सीढ़ी भी एक है।